ए.टी.एम. ए.टी.एम. एक ए.टी.एम. अ बहुत अच्छा सुविधाजनक है कहीं से कहीं पर भी हम पैसे की जरुरत रहने पर हम ए.टी.एम. से पैसा निकल सकते हैं।

और बहुत अ उपयोग उपयोगी है ए.टी.एम पैसा निकलने के लिए कभी भी जरुरत पड़ सकता है तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं।

योगा करना चाहिए हम सभी को--

अपना चाओ ही नवरात्री के टाइम भी जाते है यहाँ पे भूक समय डांस सीखने के लिए आते है लोग बहुत दूर- दूर से आते हैं।

आ डिनर कर खाना खा के आते है खाना पैकिंग करा के ले जाते है।

ये एक किराना स्टोर है यहाँ पे आपको सारी चीजे है जो मिल जाएगी जिस चीज की जरुरत ठंडा ठंडा मांगो मिलेगा चॉकलेट मिठाई का--

सारे चीजे मिलेगी जो की बहुत ही अच्छा है बहुत सारा सामान है तो--

दुकान है यहाँ पे बहुत सारे टीशर्ट हर तरह के टीशर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी सस्ते मे और यहाँ--

ये कोई मूर्ति है जिसे इसे ठ इसे ठंडा करने लिए ले जा रहै है।

एक क्लास रूम हैं जो की बहुत सा बेंच हैं बेंच बेंच को बहुत अच्छी तरीके से जमाये है और बहुत यहाँ पे--

ये एक बहुत बड़ा कॉलेज है यहाँ पे रंगाई पोताई में साफ़ सफाई बहुत अच्छा है यहाँ पे बाइक वाइक है अच्छे से जमा है लाइन से --

एक घर है यहाँ पे पुट्ठी कर रहै है बहोत अच्छे से कर रहै है बहोत ही साफ कर रहै है अच्छे से--

एक चाट की दूकान है यहाँ पे बहुत अच्छी सी अच्छी - अच्छी चाट और फास्टफूड का जल्दी खाने के लिए यहाँ पे बनाते है।

एक साड़ी साडी का दुकान है बहुत ही बड़ा साड़ी का दुकान है यहाँ पे बहुत सारी साड़ी हैं बहुत सारी डिज़ाइन की साडी है।

और बहुत ही आकर्षित है बहुत ही रंग बिरंगी कलर हैं जो की बहुत ही अच्छायहाँ पर जो लाइटे लगी है वो भी बहुत ही अच्छे --